जो कि व्हाइट और पिला है और पिछे पेड़ लगे हुए है जो कि एक लडका खड़ा है जो कि व्हाइट शर्ट पहना है ब्लॅक पैंट पहना है पिछे एक जाली है ब्लॅक --

एक पहाड़ है बहुत सारे एक आदमी भी है जो कि ब्लॅक कलर के कपड़े पहने है पहाड़ी के नीचे है।

यह जोकि कतथें कलर के पहाड़ है और मिट्ठी है ब्लॅक कलर के ग्रीन ग्रीन पेड़ दिखाई दे रहे है और--